सामने में दो टेबल भी दिखाई दे रहा है।

साथ में दो लड़के भी दिखाई दे रहा है।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

नीचे की जमीन भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा स्कूटर भी दिखाई दे रहा है सामने में एक नाले भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के एंट्रेंस भी दिखाई दें रहा है।

पीछे की फ्लोर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक वॉल क्लॉक भी दिखाई दे रहा है।